यह एक जलाशय का दृश्य दिखाई दे रहा है।

ए_टी_एम के अंदर लाइट जलते हुए दिख रही है।

हमने यशु भगवान का बहुत बड़ा तस्वीर लगा है।

यहां बैठने के लिए बहोत सारी कुर्सियां लगाई गई है।

यहां एक ए_सी लगी हुई है।

आगे कुछ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए दिख रहे है।

यह चारो तरफ से बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ है।

नीचे जमीन में हरी हरी घास उगी हुई है।

यहां बड़े अक्षरों में बिसेट मोमो लिखा हुआ है।

दूर में एक टेलीफोन टावर भी दिखाई दे रहा है।

यहां प्लास्टिक के नेट से बाउंड्री वॉल बनाया गया है।

यहां बड़े अक्षरों में झारक्राफ्ट लिखा हुआ है।

नीचे जमीन में हरी-हरी घास उगी हुई है।

यहां एक नदी बहते हुए दिखाई दे रही है।

काले रंग की बहुत सारे कुर्सियां रखी गई है यहां एक ए_सी भी लगा हुआ है।

सामने कुछ मकाने भी बनी हुई दिख रही है।

रोड पर पीले रंग के बैरिकेट्स रखे हुए हैं।

सामने अंडा का क्रेट भी दिखाई दे रहा है।

अंदर एक प्लास्टिक का बर्तन रखा हुआ है।

यहां कुछ लोग भी घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं।

टायर में हवा भरने के वाला पाइप भी दिखाई दे रहा है।